ई एगो दोकान हउए। बड़ अच्छा लागता सजल बाटे। खाए वाला बाटे। आ --

एडलो होटल बाटे बहुत अच्छा लागता एगो गाड़ी खड़ा बहुत आ बहुत भीड़ का आदमी आवतान लोग जातन लोग उजर के घरवा बाटे अच्छा लागत बाटे।